जिसके ऊपर सदर अस्पताल देवघर लिखा हुआ है।

लंबा लंबा पेड़ है खजूर का--

और वो दया नाव चल रहा है नाव के ऊपर आदमी है।

लाइट है एक शीशे का खिड़कियां हैं।

एलालेबस्टर से झरा हुआ है।

अंदर से भी अ बाह आदमी बाहर आ रहे हैं।

ये एक होटल है जिसमें बहुत सारा टेबल है लगा कुर्सी है।

यह एक नदी है जिसमें दो नाव है।

ये एक खिलौने का दुकान है जीस काउंटर में शीशे का शीशे का काउंटर है।

ढेर सारा खिलौना है जिसमें गुड़िया है।